और ये चट्टान बीच में स्थिति है|

हरे पीले लाल सफेद और भी अनेक प्रकार के पुष्प हैं।

ये एक ट्राफिक एरिया का दृश्य है जहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसके आगे बहौत सारी गाड़ियां हैं।

और इसके साये इसके नीचे रोड पर हरी घास के लगी हुई है।

और अपने पैसों का आदान प्रदान करते हैं।

और अलग अलग डिजाइन के कप हैं जो काफी सुंदर लग रहें हैं|

इस गार्डन में बहुत सारे फूल पेड़-पौधे हैं।

आने वाले नए स्टूडेंट आने वाले स्टूडेंट का स्वागत के लिए यह प्रोग्राम हो रहा है।

सामने एक लड़की और लड़के का फोटो है।

उसके पीछे एक गेट दिख रहा --

यह एक हिन्दू धर्म का पूजा स्थल है |

और पीछे की साइड एक पहाड़ दिख रहा है और खेत में किनारे किनारे वृक्ष लगे हुए नजर आ रहे हैं काफी सुंदर हरा भरा लग रहा है।

आसमान काफी सुंदर लग रहा है।

यह एक बहुत सुंदर पुराने जमाने का किला लग रहा है।

यह एक बच्चों का पार्क है।

काफी बड़ी दुकान है यहाँ से लोग सामान खरीद रहे हैं।

चार मंजिला बिल्डिंग है जहाँ जो बहोत सुन्दर लग रही है इसमें भूरे और पीले कलर --

और यहाँ पर तीन छाते लगे हुएँ हैं।

यह एक वाटर पार्क है |

यह एक घर के सामने की खुली जगह है।

और बाहर पर एक मेन गेट काले कलर का दिखा रहा होगा आपको।